और बलून रेड कलर का है और वाइट कलर का है।

इसमें बहुत सारे पुलिस खड़े हैं और--

पेड़ लगे हुए हैं पार्क के बगल में एक बिल्डिंग है।

और कैमरामैन फोटो ले रहा है।

केक पे हार्ट शेप बना हुआ है और केक वाइट कलर का है।

डांस क्लास है जिसमें सामने की ओर सीसा लगा हुआ है।

इसमें काफी सारा सामान रखा हुआ है।

और इस किराने स्टोर का नाम तुलसी किराना स्टोर है।

यह एक मकान है जिसके आगे--

नदी के किनारे साइड --

छोटे-मोटे पेड़ पौधे लगे हैं।

कुछ सामान रखा हुआ है।

इसमें तीन सोफा लगा हुआ है।

एक ए_सी लगा हुआ है एक पंखा लगा हुआ है।

एक टेबल रखा हुआ है।

और बाकी सारे लोग खड़े हैं।

इसमें एक ए_सी लगा हुआ है।

और आगे कुछ कपड़े रखे हुए हैं टेबल पे--

यह एक घर है घर क--

घर पे प्लस का साइन है।

लगाए हुए लोग खड़े हैं।

ऊपर एक तार बिजली की दिखाई दे रही है।

यह एक रेस्टोरेंट है।

यहां पे कप रखा हुआ है।

और पेड़ के पत्ते हरे हरे हैं।

यह एच_डी_एफ_सी बैंक --

और बहुत सारी महिलाएं एवं पुरुष खड़े हैं।

यह एक है के बगल में।

और इन पे कपडे टंगे--

बाइक स्टैंड का दरवाजा लोहे का बना है।

बस स्टैंड में पंखा लगा हुआ है।

इन पे बर्तन रखे हुए हैं।

हमारे पीछे सोफा लगा हुआ है।

एक कोस्कट बनाया हुआ है।

दूसरे को सूट सलवार पहनाया हुआ है।

और इसमें एक आदमी खड़ा है।

बिल्डिंग के नीचे दुकान लगी हुई है।

जिसमें काफी सारे बिछे हुए हैं।

इस घर में खिड़कियां बहुत सारी है।

और बिजली की तारे इधर से उधर जा रही हैं।

एक चेयर रखा हुआ है जिसका कलर रेड है।

एक आदमी फूलों के बीच में खड़ा है।

ये फूलों की रखवाली करता है।

इसके बगल में एक बिल्डिंग है उसमें खिड़की लगी हुई है।

जिसमें सोफा लगा हुआ है।

रोड के बगल में एक बाउंड्री किया हुआ ।

इन पौधों में बहुत सुंदर कलर के फूल लगे हुए हैं।

कैफे के आगे पेड़ है ।

यह एक रेस्टोरेंट है ।

जिसमें बैकरी का सामान मिल रहा है।

हां इसके डाउन सेलिंग में --

और यहां पे बहुत सारी मशीनें हैं ।

कुछ लोग काम कर रहे हैं।

यहां पे छड़ लगे हुए हैं ।

और बहुत सारे लोग ।

अपार्टमेंट दो कलर का है एक चॉकलेट और एक वाइट कलर का है।

और बिजली की तार लटक रही है ।

जिसमें काफी सारा सामान टेबल पर रखा हुआ है ।

बहुत सारे बेंच लगे हुए हैं बेंच का कलर ब्राउन है और एक खिड़की है।

स्टेज है जिस पे बच्चे नृत्य कर रहे हैं ।

और इसका स्टेज का कलर ग्रीन कलर का है ।

पार्किंग एरिया में दो कार खड़ी है।

जिसमें एक पंखा लगा हुआ है ।

नासपाती रखा हुआ है ।

टेबल लगी है बलून लगे है।

इस घर का फर्श वाइट कलर का है।

कुछ कप नीचे रखे हुए हैं ।

और योगा क्लास की दीवार हरे कलर की है ।

घर के नीचे पर्दे लगे हुए हैं।

पार्क के चारों साइड छोटे हो --

कुछ कलाकृतियां कर रहे हैं और एक मैडम है ।

यहां बीचो-बीच एक स्टैचू बना हुआ है।

एक लड़का बैठा हुआ है।